विभा अ विभागीय अधिकारी कार्यालय लिखा हुआ है और रेलिंग है सीढ़ी बनी है ब्लॅक मारबल लगा हुआ है।

यहाँ पर हमे जय श्री हथी दान सरकार ऐसा दिखाई दे रहा है जो की गेट लिखा हुआ है उसपे और गेट खुली हुई है अंदर जाने के लिए।

यहा पे एक किला जैसा बना हुआ है जिसके बगल एक बिजली खंबा है जिस पर तार लगे हुई नज़र आ रहे है और किलाजो बना हुआ है उसके अंदर रहने के लिए रास्ता दिखाई दे रही जो काफी बड़ा है और अगल-बगल कुछ पोस्टर लग रखे है छोटे-छोटे से नीले रंग के सफ़ेद रंग के दिखाई दे रहे है।